मुस्लिम समुदाय अ के बहोत ही एक पवित्र जगह है जिसे मस्जिद कहते है। यह मस्जिद बहोत बड़ा और काफी बड़े अ में फैला हुआ है। ई मस्जिद में --

यह एक पॉरचून की दुकान है जोकि बहुत बड़ी और काफी सामान इसमें यहाँ पर एक ही दुकान में हर एक प्रकार के सामान मिलते हैं।

एवं इस दुकान में कॉपी कलम वगैरा भी मिलता है एवं कोस्मैंटिक भी सामान भी मिलता है और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिये बोहोत सारे खिलौने भी हैं।

जो यहाँ पर लोग अच्छे दामों मे यहां आके खरीदते हैं और अम्म अच्छा सामान मिलता है।

यह फारम के चारों ओर एक जाली भी लगाया गया है। ईर यहाँ पर बोहोत सारे अच्छे पेड़-पौधे एवं फूल भी लगाये गये हैं।

ए डॉक्टर बैठते है जो अलगली बीमारियों को देखते हैं। बोहोत ही अच्छा और साफ-सुथरा हॉस्पिटल है।

प्राकृतिक आपदाओं से एक पहाड है। जो काफी ऊँचा और काफी बढ़िया पहाड हैं। यहाँ पर लोग दूर-दूर से घूमने आते हैं और यहाँ एक गुफा भी हैं जिसके अंदर लोग घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पर से कुछ --

लगता है इस बिल्डिंग के ऊपर एक गुम्बज आकार का भी बनाया गया है जो देखने में बोहोत ही आकर्षक लगता है।

या कुछ सिनेरी और पैंटिंग भी लगाई गई हैं और कुछ कप प्लेट वगैरा को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया और यहाँ पर बोहोत बढ़ियां और अच्छा खाना मिलता है।